वॉव यह तो कुमार का काम है यार घड़ा-वडा सब बनाया है और लगता है यह मेरे घर के बगल मनुरंजन कुमार है।

और ये हम क्या बतायें इसमे तीन गो खिड़की शायद हमको नजर आ रहा है| अधिनियम दो हजार एककिस का है और तो --

रेलवे के यहाँ पे रहने वाले व्यवस्था है लगता है क्या--